दिखाई दे रहेमुझे यहाँ पर एक टेबल भी दिखाई दे रही मुझे यहाँ पर एक बेंच भी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर कुछ बॉटले भी दिखाई दे रही है मुझे यह पर अंडा भी--

पर कुछ फूल वगेरा दिखाई दे रहे है मुझे यहाँ पर लाल मिट्टी भी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर बादल भी दिखाई दे रहे है मुझे यहाँ पर कुछ नदियां भी बहती दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर एक बांध भी दिखाई दे रहा है।